यहाँ उनके ऊपर फसे नहीं हे ऊपर आसमान हे यहाँ सूखे टहनियाँ हे खड़े होने की जगह है।

यहाँ ऊपर पर एक रस्ता गया हुआ है पतले-पतले से रेलिंग --

दूसरे पीछे साइड पर भीड़ की भीड़ खड़ी हुई है देख रही है हँस रही है मैदान में बहुत से लोग खेल रहे --

--बड़े-बड़े बिल्डिंग है घर है बड़े-बड़े पेड़ है।

अंगूर रखे हुए है और एक फ्रूट है एक भैया हरे टी-शर्ट भी पहना है ।

और बहुत सारे लोग जा रहे है जिनके हाथ में पैकेट है कुछ बैग है।

एक कार खड़ी है और एक बस भी हैं ।